ये कोई पूल लग रहा है नदी। अ ऊपर से शावर आ रहा है झरना है। अ दो लोग इसमें स्नान कर रहें हैं लेकिन एक चीज इसमें गलत है की साइड में इतना प्लास्टिक ई सब फेका गया है। ये सब नही फेकना चाहिये हमेशा साफ ही रखना चाहिए। हर --

लेकिन इसमें से डस्टबिन आगे में मतलब नही रखना चाहिए थोडा साइड करके रखना चाहिए। यहाँ पे एक आठ लोग हैं और अच्छी सुविधा हो सकती है यहाँ की और यहाँ जाने के बाद ही प --